उसके साइड में एक छोटी सी नाव भी चल रही है।

यह फोटो एक सड़क की है यहां पर सड़क के दूसरी तरफ--

एक सोफा और एक टेबल रखा हुआ है।

ये फोटो एक कपड़े की दुकान की--

बहोत सारे चांद के अंदर में--

ये फोटो एक बस की फोटो है।